खड़ी है एक बच्चे के साथ और उस ग्राउंड में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और वहाँ की घास पूरी--

जैसे कि उसमें सफाई होती है ट्रीटमेंट किया जाता है पूरा तरीके से पीछे की तरह एक वॉस बेसिंग है।

यह एक इमारत पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एल_जी लिखा हुआ है और उसी का सिंबल बना हुआ है।

अंदर की तरफ एक कुर्सी है बाहर की तरफ दो कुर्सी है और टेबल पर कुछ फाइल रखी हुई है।

यह एक तालाब है जिसमें आपको बहुत सारा पानी दिख रहा होगा ये तालाब पूरे पत्थरों से घेरा हुआ है।

और उनके ही आजू-बाजू बहुत सारी पेड़ पौधे दिख रहे हैं और वहाँ का वक्त शाम का है।

ये एक लोखंड का गेट है जिसमें बहुत सा जंग लगा हुआ है और पीछे साइड भी बहुत सा लोखंड का सामान रखा हुआ है।

और ऊपर की तरफ एक लाल कलर का अलार्म लगा हुआ है यही दूसरी साइड लाल और हरे कलर का --

बोर्ड बना है जिस पर कुछ नोटिस लिखी हुई है उसी के बगल में एक दरवाजा दिख रहा है और उसे पूरा ब्लैक कलर के मार्बल से कवर किया हुआ है।

गेट खुला हुआ है और उसकी जगह का पूरा कलर सफेद है।

में कई तरह-तरह की बॉटल नजर आ रही है उसी के बाजू में एक सर्कल में कवर्ड बना हुआ है।

यह एक छत बनी हुई है जो कि पूरी तरह से काँच की बनी हुई है उसके अलग-अलग पार्ट्स से उस एक तरह जोड़े हुए हैं।

और उसे एक छोटे से पिलर की मदद से खड़ा किया गया है और पीछे की तरह--

इसी के बाजू में एक मशीन है जिसमें ऑरेंज और नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है।

सामने की तरफ एक दीवार है दीवार के ऊपर पतरे से उसे कवर किया गया है।

दोनों साइड दो लाइट है एक ब्लू है और एक लाल है ऊपर की तरफ वाइट कलर की लाइट लगी हुई है।

जिसके हाथ में एक पेन है काउंटर के बाहर की तरफ एक आदमी खड़ा है जिसके भी हाथ में पेन है वो दोनों पेन देख रहे हैं।

उसमें हुक वाले पट्टे भी है और चैन वाले पट्टे भी है दूसरी तरफ कई सारे खिलौने रखे हुए है वो भी अलग अलग डिजाइन --

यहाँ रास्ते पर एक ट्रक खड़ा है ट्रक के पीछे साइड दो आदमी ट्रक की तरफ देखते हुए खड़े हैं दो आदमियों के पीछे--

बहुत सारी सिख रखी हुई है और एक जाली का दरवाजा भी बना हुआ है।

यह एक कमरा है जिसकी दीवारों पर गुलाबी रंग लगा हुआ है उसी में एक पंखा शुरू है और दीवारों पर--

यह एक शॉप है जिसमें एक छोटा सा टेबल लगा हुआ है टेबल की तरफ तीन कुर्सी लगी हुई है बाजू की तरफ एक कुर्सी है जिस पर एक आदमी--

मोबाइल देख ते बैठा हुआ है उसी के बाजू में एक छोटा टेबल बना हुआ है जिस परे कई कलर कलर के हेलमेट रखे हुए हैं।

ये एक छोटी सी दुकान है जिसका शटर लाल कलर का है उसी के ऊपर एक काले कलर का बोर्ड है जिस पे कुमार फुटवियर लिखा हुआ है।

और काउंटर के बाहर के साइड बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं अंदर की तरफ दो फ्रिज नजर आ रहे हैं।

जिसमें कई अलग-अलग कोल्ड ड्रिंक हुई है और कई लोग सामान लेने के लिए खड़े हैं।

ये एक बहुत बड़ा रेसिंग का मैदान है जिसमें से तीन लड़के रेसिंग कर रहे हैं दो लड़कों ने येलो टी शर्ट पहना है।

सबसे आगे की तरफ दौड़ रहा है पीछे पूरी हरियाली दिख रही है।

ड्रैगन फूड है और नासपति है तरबूज है बहुत सारे फल मौजूद है।

एक मशीन रखी हुई है जिसमें से एक आदमी पैसे निकाल रहा है और दूसरा आदमी पैसे निकाल कर बाहर की तरफ जा रहा है।

ये एक धाबा है जिसका नाम डी एस के विष्णु धाबा है जिसके बाहर दो जीप खड़ी है दोनों जीप का कलर --

लाल और काला है एक जीप के ऊपर समान है ग्राउंड में बहुत सारे--

में एक गेट लगा है उसमें से एक बच्चा गेट की ओर जा रहा है।

ये सभी एक साथ खड़े होकर हंस रहे हैं और पीछे पूरी हरियाली नजर आ रही है।

यह एक फूलों की दुकान है जिसमें कई रंग बिरंगी फूल रखे हैं जैसे कि नीला लाल गुलाबी पीला सफेद--

बाहर खड़े हैं यहां पे बहोत बड़ा मैदान भी नजर आ रहा है और एक बस की तरफ दरवाजा खोल कर खड़ा हैं।

यह एक वाटर पार्क है जिसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसमें कई लोग--

यहां कमरे में एक टेबल रखा हुआ है जिसके सामने की तरफ दो कुर्सी हैऔर दूसरी तरफ एक बड़ी कुर्सी है।

यह एक होटल है जिसमें कई सारे टेबल और कुर्सी लगे हुए हैं कई सारी कुर्सियों पर बहुत लोग बैठे हैं और कुछ ना कुछ खा रहे हैं।

यह एक मेडिकल स्टोर है यहां पर कई सारी दवाइयां रखी है इसमें बेबी के प्रोटीन पाउडर से लेके मिल्क पाउडर तक मौजूद हैं।

और यहां पर बी_पी की मशीन शुगर की मशीन भी है और बच्चों के डायपर तक है।

बैग पहना हुआ है सभी लोग जंगल की ओर चल रहे हैं।

जंगल में बहुत ही हरियाली है और बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ और पौधे हैं।

कूलर फिल्टर सभी जैसे बहुत सारा सामान रखा हुआ है और ये सभी अलग-अलग ब्रांड के समान है।

यह एक छोटा सा प्लेग्राउंड है जिसमें कई सारे झूले रखे हुए हैं सामने की तरफ एक छोटी पिसल गुंदी है।

के पीछे दो आदमी खड़े हैं एक आदमी कुछ कर रहा है।

और पूरे ग्राउंड में हरियाली ही हरियाली है सामने की तरफ बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ हैं।